और कितनी अच्छी स्पेस भी है और कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है हम अपना सामान भी इसमें रख सकते हैं इजली --

हेलो फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हैं यह एक बुक शॉप है यहां पर आपको हर क्लासेस की बुक मिल जाएगी सी_बी_एस_सी की--

जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर एक कोचिंग चल रही है जहां पर आप पढ़ाई कर सकते हैं।